इस इमेज में डॉक्टर का केबिन दिखाई दे रहा हैं और कुछ लोग यहां पर खड़े होकर बातें करते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे एक लड़का एक्सरसाइज करता दिखाई दे रहा है और कसरत की मशीने नजर आ रही है।

इस इमेज में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है यहां पर सोफा टेबल भी रखे हुए है।

इस इमेज में स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर शादी का डेकोरेशन नजर आ रहा है।

इस इमेज में दूकाने दिखाई दे रही है और यहाँ पर कार और स्कूटर भी नजर आ रही है।

इस इमेज में ये कुछ टेबल कुर्सी दिखाई दे रहे हैं और गमले में शो प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे ईमारत दिखाई दे रही है यहाँ पर खिड़की दरवाजे भी नजर आ रहे है।

इस इमेज में रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग खाना खाते नजर आ रहे है।

इस इमेज में कुछ बच्चे डांस करते दिखाई दे रहे हैं और फ्रॉक भी पहने नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर इमारत दिखाई दे रही है नीचे कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लड़के बैठे हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में स्टेज दिखाई दे रहा है यहां पर साइड में दो लेडी भी खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है नीचे कुछ लोग बैठ कर भाषण सुनते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने शो केस दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ केन नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक डेकोरेशन की दुकान दिखाई दे रही है और फूल भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा वहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है जहां पर दीवार पर सुंदर पेंटिंग नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिए यहां पर खंडहर दिखाई दे रहा है सामने एक व्यक्ति भी खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने मंदिर दिखाई दे रहा है ऊपर देखिएगा झंडे का डेकोरेशन नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है और बोर्ड पर आर_के मोटर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक स्टेडियम दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ सीढ़ियां पर लोग खड़े नजर आ रहे हैं।